जहां बहुत सारा समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक दुकान है दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

यहां एक खुला मैदान है मैदान मे --

बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ा है।

हॉस्पिटल हैं जहां मेज पर एक बोर्ड लग रखा हुआ हैं।

सामने मनी ग्राम लिखा हुआ है।

और एक्टिविटी क्लासेस फॉर किड्स एंड वूमेन लिखा हुआ है।